यह एक मस्जिद है यह मस्जिद के --

इसे बनाने में काफी ही मेहनत लगता है लगा होगा यहाँ पर बहुत सारे लोग इसे देखने आते हैं ।

चर्च हो कर गया है चर्च रोड के साइड में है और यह रोड के साइड में हरे-भरे पेड़-पौधे लगाए गए हैं जो देखने मे काफी ही सुन्दर और अच्छा है और चर्च में क्रिश्चियन लोग आकर प्रेयर करते हैं।